आसपास के फर्नीचर को भूरे रंग से रंगा गया है और दीवार को सफेद रंग से रंगा गया है।

यह दृश्य किसी रेस्टोरेंट की दीवार का है जिसमें सामने की ओर एक लाइट जलने वाला बोर्ड लगा हुआ--

दीवार में कई सारे पेंटिंग लगे हुए--

यह दृश्य एक मस्जिद का हैं जिसमें सामने की ओर मस्जिद के द्वार को लाल रंग से रंगा गया हैं।

यह दृश्य किसी पुल पर का है जिसमें सामने की ओर एक व्यक्ति से साइकल से कुछ ढोता हुआ नजर आ रहा है।

यह दृश्य किसी रोड का है जिसमें आसपास की रोड को मिट्टी से बनाया गया है।

सामने की ओर एक एच_पी का पेट्रोल पंप भी है और एक सामने की ओर एक छोटी सी गुमटी भी है।

यह दृश्य एक साइकल दुकान का है जिसमे सामने की ओर कई सारी साइकल रखी हुई नज़र आ रही है।

इस चित्र में सामने की ओर दो फ्रीजर बाहर रखे हुए नजर आ रहे हैं ।

इस जमीन पर कई सारा कचड़ा बिखरा हुआ है और जमीन का रंग सुरमई रंग का है।

नीचे की ओर रोड में कई सारे लोग और कई सारी वाहन भी नजर आ रहे हैं।

दृश्य किसी सुपर मार्केट का है जिसमें कई सारी रैकों में खाने पीने की वस्तुएं रखी हुई नजर आ रही--

सामने की और कुछ व्यक्ति खरीदारी करते हुए भी दिख रहे हैं।

आसपास की दीवारों को भगवा रंग से रंगा गया है जिसमें पंखे लगे हुए है।

मस्जिद की गेट को पीले रंग से रंगा गया है और कई सारी टाइल्स लगाई गई हैं।

चित्र में सामने की ओर एक क्रिश्चियन धर्म का ग्रेवयार्ड नजर आ रहा है।

यह दृश्य एक साइकिल की दुकान का है जिसमें सामने की ओर कई सारी साइकिल रखी हुई नजर आ रही है।